यह एक मन्दिर दिखाई दे रहे है।

और एक ऑटो भी दिखाई दे रहे हैं।

है यह नजारा लाइटिंग दिख रहा है।